यह कोई परफ्यूम की दुकान दे दिखाई दे रही है यहां पे साबुन सर्फ--

फूलों का माल भी टांग रखी है।

और कबूतरी रंग का बोर्ड भी लग रहा है।

यहां पर गाड़ी मोटरसाइकिल सकुटी --

यहां बहोत सारे आदमी खाना खा रहे हैं और आराम कर रहे हैं।

और यहां कुछ भी छपी हुई है।

भी चले हुए हैं उसमें सवारी

ऊपर नीचे झील भी दिखाई दे रही है और पीलि रंग की रंगीन पेंटिंग भी हो रही है।--

जैसे कोई लमिशन कारड करवाओ या कोई मोबाईल ठीक कराओ--

नजर आ रहे हैं और बड़े बड़े पेड़ भी दिखाई--